इस फोटो में मुझे ये पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो मे मुझे एक बड़ा टेबल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे लाइटे दिखाई दे रही--

इस फोटो में मुझे बिजली के खंबे दिखाई दे रहे है।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

इस फोटो में मुझे टिशू पेपर दिखाई--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

इस फोटो मे मुझे टेबल कुर्सी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो मे मुझे ओपेटी पेटीएम नंबर प्लेट एंड डेकोरेट की दुकान दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारे स्त्री पुरुष बच्चे दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे बिल्डिंग दिखा--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

एक फोटो में मुझे महिला पुरुष दिखाई दे रहे--

इस फोटो में मुझे कुछ पुरुष दिखाई--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

इस फोटो मे मुझे एक बड़ा स्टार दिखाई दे रहा है।